यह ए स्कूल है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है।

हम जानते हैं कि हमें अगर कहीं पास में जाना होता हैं तो हम बस या टेम्पो से नहीं जाकर ई-रीक्शा से जाते हैं।